यह डिस्ट किसी मार्केट का है जहा पे दो-दो आदमी अपनी पुस्तके के बेच रहे हैं जो बहुत मोटे-मोटे है शायद ये पुस्तक जनरल नॉलेज के है।

बहुत खूबसूरत फोटो है जहाँ एक ब्रिज के सामने या फिर रेलवे ब्रिज के सामने एक आदमी कैप पहन के फोटो खींचवा रहा है।

ये दृष्ट एक बुक स्टोर की है जहाँ पे कुछ लोग बुक खरीद रहे हैं और वहाँ पे एक ट्यूब लाइट लगी हुई है जो बहुत अच्छी लग रही है।

आगे बहुत सारे पेन पेंसिल हाइलाइटर एवं मार्कम मारकर मुझे दिख रहे है और वहाँ पे एक आदमी शायद बहुत ध्यान से कुछ देख रहा है।

सलून के अंदर कुछ लोग भी है और सलून का डेकोरेशन बहुत अच्छा है और जो आदमी फोटो खिंचवा रहा है उसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है।

और यहा बहुत अच्छा मौसम है| खुले आसमान मे लोग बाइक चला रहे है और अपने काम से बाहर-अंदर घर के बाहर जा रहे है और यह फोटो शायद सुबह की टाइम के है जो बहुत अच्छे लग रही है।

ये पिक्चर दिन के समय का है यहाँ पे एक बच्चा हँसते हुए फोटो खिंचवा रहा है इसके पीछे का दृष्ट बहुत दृश्य बहुत अच्छा है जहाँ पे गेंदे के फूल भी लगे हैं और एलो-वेरा का पेड़ भी मुझे दिख रहा है।

ये डिस्ट एक लिय लाइब्रेरी की है जहां पे एक औरत और तीन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।